इन कैनिस का कलर अलग अलग है।

सागर वर्मा बाउंसी अकाश वर्मा है।

ये मोबाइल रिपेयर की शॉप है।

ये आदमी कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा है।

काफी मैट भी रखे हुए हैं।

इसके अंदर काफ़ी ब्लैक कलरस की चेयरस भी लगी हुई है।

सेवन थर्टी फाइव एफ इ लिखा है।

इसके पीछे मिट्टी खेत में साफ करने के लिए--

इसके बाहर काफी लोग खड़े हैं।

इन मीटर में काफी बत्तियां लगी हुई है।

एक बेड के ऊपर व्हाइट बेड शीट एंड टू व्हाइट पिलो पड़े हैं।

एक्टिविटी करके दिखा रही है।

ब्लैक कलर के बैलूनस भी लगे हुए हैं।

इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं।

ये दोनों आदमी बकेट में वाटर एंड सर्फ लेकर--

इस रैक में कई अलग अलग कलर के सूट पड़े हुए हैं।